एक महिला अपने बच्चे को दिखाने के लिए आयी है।

यहां पे एक लड़की नृत्य कला कर रही है।

झंडे लगे हुए हैं दो बाइक खड़ी हुई है।

ये पक्की सड़क नहीं है ये कच्ची सड़क है।

इसके बाहर एक ए_सी है इसके अंदर एक छोटा सा टेबल है बैठने के लिए इसके शीशे का गेट --

ये एक मॉल है छोटा सा जिसके चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं।